और यह ट्रेन राजधानी ओरंगाबाद अपने यहाँ पे सभी लोग आये हुए हे यह जगह बहुत ही सुन्दर दिख रहा हे काफी सारे पौधे लगाए हुए हे ।

यह दुकान में लड़के-लड़की की काफी भीड़ लगी हुई हैं यहाँ पे वैकेंसी फॉर्म और अनेक किताबे मिलती हैं।

यह एक बैंक है यहाँ बैंक में बहुत सारे लड़के आए हुए हैं यहाँ बैंक के गेट खुल रहे हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं।

यह एक एरोप्लेन हे यह एरोप्लेन उड़ान भर रही है इस एरोप्लेन में बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

बहुत सारे लोग आए हुए हैं काफी लोगो की भीड़ बाजार में लगी हुई है बहुत सारे दुकान हैं और आदमी खरीदारी करने के लिए आए हुए --

यह प्लेन उड़ान भरने वाली है यहाँ ऐयरपेट बहुत ही सुन्दर दिख --

यह एक ऑफिस है यह ऑफिस में बहोत सारी औरतें आई हुई हैं यह ऑफिस में बहोत सारी औरत आदमी यहाँ पे आए हुए हैं यह एक ग्राहक सेवा केंद्र हैं यहाँ पे पैसे निकालने के लिए आते हैं।

इसमें एक मंदिर है यह मंदिर हनुमान मंदिर है यहाँ पे इस मंदिर में बहुत सारे भक्त भगवान हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं।